बंगला पैस्ट्री शॉप लिखा है यहां पर केक भी मिलते है।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कोई खड़े --

एक पीछे की तरफ यहा भेड़ों को --

यह पर एक नीले कलर का फर्श के ऊपर --

अंथीपद में बैठकर खाना खा रहे हैं।

ये एक गार्डन है जहां पर एक पैड़ लगा हुआ है जिसमे --

और एक बरक वाला झूला भी है और आसपास पेड़ भी लगे हुए हैं पीछे की तरफ एक सफेद कलर का घर जैसा भी है।

और वहाँ पर टिशू भी रखा है टेबल पर और एक काले कलर का चश्मा भी है।

को लाल कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं दीवार पर--

यहां एक रोड जैसा है जिसके आसपास प्लॉट एरिया --

और एक मे सफेद कलर का जिसके हाथों में--

यहा एक भारत पट्रोलीअम हैजहा पेट्रोल डीजल मिलता --

स्काई ब्लू कलर की टी-शर्ट पहने हुए लड़की रन कर रहे हैं।

लगी हुई है जो काले कलर की पुती हुई है और लाल कलर की--

है ओर आसपास पीछे की तरफ पेड़ पौधे भी दिखाई डे रहे है।

को के पास लगे हुए है और एक लड़की--

यहाँ पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी और नीचे की तरफ एक बेडरोल का अ --

यहां पर नीले कलर का बोर्ड लगा है जिसपे जैन बुक एजेंसी ए कम्पलीट बुक स्टोर लिखा ए --